टू टुटा हुआ है पार्ट गिरा हुआ है टुटा हुआ है एक साइड में पूरा जला हुआ है पीछे भी बहुत सारे फोर व्हीलर लगे हैं यहाँ का कलर --

हा एक व्यक्ति हाथी के उपर चढ़ा हुआ है और बांस से उसे मार रहा है बहुत सारे व्यक्ति --

औरत जो है पीछे एक औरत बैठी हुई है झोला टांगा हुआ है पीले कलर का त्रिपाल घेरा हुआ है एक व्यक्ति स्काई कलर का शर्ट पे --

बहोत सारे पेड़-पौधे है पेड़ का रंग ग्रीन है पीछे पहाड़ का सी --

काले कलर का कुर्सी पे बैठ के बाल कटा रहा है एक व्यक्ति शर्ट चेक चेक कलर के शर्ट पेहन के उसका बाल काट रहा है यह है।

ये एस.बी.आई. बैंक है यह बैंक में एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ दो तीन स्कूटी लगी हुई हैं एक बैग लगा हुआ है बैग के उपर --